खम्ब उ उम पंखा भी लगा हुआ है ऊपर बोर्ड भी दो दिखाई दे र --

यह एक कंपनी दिखाइ दे रही है।

यहां मैगी कुरकुरे चिप्स --

टंगा हुआ है बिजली की डोरी भी टंगी हुई है।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

अलग खानों में जची दिखाई दे रही हैं।

इस चूड़ी की दोकान दिखाई दे रही है।

बहोत सारे आदमी बैठे हुए हैं।

और हाथ में पूजा की थाली--

और खेतों में बोआई दिखाई दे री हैं।

और एक गणपति बाबा भी उनके ऊपर बैठा रखा है।

बिजली के खंभे भी लगे हुए हैं।

और एक दीवार पे दो बॉड लगे हुए है।